होटल दिखाई दे रहा है उस होटल में एक चैंबर बना हुआ दिखाई दे रहा है चेयर रखी हुई दिखाई दे रहै--

ऊपर को बहोत सारी मुर्तिया बनी दिखाई दे रही है गुम्मज दिखाई दे रहे है।

बड़ा सा पूल बना हुआ दिखाई दे रहा है पूल काफी बना हुआ है।

पूल के नीचे घास लगी हुई दिखाई दे रही है और --

जैसा की देख पा रहे है एक माकन दिखाईं दे रहा है उस माकन का गेट भी दिखाई दे रहा है खिड़की दिखाई दे रही है।

एक नल भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है और --